और इस नाई की दुकान को अच्छे से डेको-डेकोरेट किया गया है हम-हमारे घर में भी --

भवन दिखाई दे रहा है जो की म स्कूल जैसा स्कूल हो सकता है।

नजर आ रहा है ये बुक है ये बुक की दुकानें हैं इसमें कई तरह के बुक होते हैं।

सभी लोगो को एक्सरसाइज करना चाहिए एक्सरसाइज से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है।

करकट की ये गेरेज है और यहाँ करकट का ऊपर में करकट लगा हुआ है।

उसके बाहर एक लड़का कुर्सी लगा कर बैठा हुआ है और चारों तरफ --

और छोटे-छोटे लॉकर्स भी बने हुए है यहां पे धन्यवाद।

यहां पे एक पंडी जी है जो कि पूजा कर रहे है यहाँ मुझे बहोत सारा कलश भी दिख रहा है।

और माता रानी दुश्मन का वध करते हुए अ नजर आ रही है।

और यहाँ पर वो सभी हाथ जोड़े रखी है धन्यवाद जय हिन्द जय भारत।

इस तस्वीर मे मुझे बहोत सारे बच्चे नजर आ रहे है जो की पेपर को केंची से काट रहे है।

बहोत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर बहोत सारे मोटरसाइकल रखे हुए है धन्यवाद जय हिन्द जय भारत।